यहां जो है पहाड़ के ऊपर से इसका फोटो लिया गया है लेकिन नीचे काफी ज्यादा हरियाली है और रास्ता भी है और सूखा हुआ पेड़ जो कि झाड़ टाइप का लग रहा है देखने मे --

को ऑपरेट करने का काम या इसको कहीं सेटिंग करने का काम ये --

खाना भी चाहिए।

ये किसी तालाब का सीन है जो की इसका --

प्रोफेशनल सैलूल जो है खोला गया है।

जेंट्स का सलून है ब्यूटी पालर --